चेयरें लगी हुई है लिखा हुआ है बच्चों के खेलने का ये है।

दो आदमी है वो अंदर को जा रहा है। उसने येलो शर्ट पहनी हुई है। आस-पास घास उगा हुआ है।

और भी बहोत समान है टेबल है चेयरे हैं वाशिंग मशीने है।

यहां बड़ी बड़ी पीछे चट्टानें है बड़े बड़े पौधे लगे हुए हैं डेकोरेशन के लिए बहोत ही सुंदर सी जगह है।

ये जो पिक्चर है एक सड़क की पिक्चर है लोग यहां कहां जा रहे हैं बहोत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनी हुई हैं।

शर्टे रखी हुई हैं जेंट्स की अंदर में सजाके बहोत ही कलरफुल शर्टे रखी हुई अलग अलग टाइप की--

पीछे जो है और भी लोग खड़े हैं साथ में उसके बच्चा पड़ा है सामने से वो दोनों अपनी सेल्फी ले रहे हैं कोट पैंट में डाला हुआ है।

ये जो पिक्चर है एक आदमी की पिक्चर है वो अपने कमरे में लेटा हुआ है उसके पैर में लगते चोट लगी है सामने पर्दा किए हुए पिंक कलर का--

ये जो पिक्चर है मंदिर की पिक्चर है लोग वहां पे खड़े हैं।